व्हाइट कलर में भी है सीढ़ियां भी दिख रही है और भगवा कलर में मंदिर भी दिख रहा है पानी दिख रहा है इधर।

बिजली के तार जाते हुए दिख रहे हैं एक व्हाइट कलर की कार दिख रही है उसका पीछा कैसा दिख रहा है एक ऑटो दिख रहा है उसका भी पीछा कैसा दिख रहा है।

इधर एक व्यक्ति पूजन करते हुए दिख रहा है जो ब्लू और व्हाइट कलर के शर्ट पहन हुआ है।